इस पिक्चर में हमें यह दिखाया गया है।

इस पिक्चर में हमें यह दिखाया गया है कि यह एक रेलवे स्टेशन --

बहोत ही बड़ी है जिसके आगे शीशे की फ्रेम में --

और यहां बहुत ही सारी अच्छी अच्छी--

इस पिक्चर में हमें देखने को मिल रहा है।